और कुछ कपड़े रखे हुए हैं और एक फिटिंग की तरह बनी हुई है।

और ऊपर चमकनी लग रही है।

जिनमें कोई बल रही हैं और कोई बंद है।

उसपे स्टील के बर्तन रखे हुए हैं।

और ऊपर लाइट भी लगी हुई है।

और यहां पे बहुत सा अलग अलग प्रकार का सामान रखा है।

और नीचे कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।

और यहां पे एक बोर्ड सा भी लग रहा है।

और इनमें दो आदमी के चेहरे छूपे हैं।

और यहां पे एक टंकी भी रखी हुई है।

और इसके पास में कुछ दो बैठने की मेज सी पड़ी है।